यहां बहुत अच्छा-सा मकान जैसा कुछ है अच्छा जगह है देखने वाला है उधर पीछे से पेड़-पौधा है उ मस्त फील्ड जैसा है रास्ता बना हुआ है बहुत अच्छा है बहुत सुंदर --

यहाँ पर टीचर खड़े हैं बच्चे सब ड्राइंग बना रहा हैं बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छे-अच्छे ड्राइंग बना रहा है यह स्कूल बहुत अच्छा है इसका कलर रेड और व्हाइट में है बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ कुर्सी है टे --

हूं बहुत अच्छा लग रहा है हाथी के दांत बहुत बड़े-बड़े हैं।

बाजार लगा हुआ है सब्जी भी बेचा रहा है सब लोग सब्जी खरीद रहे हैं बहोत भीड़ लगा हुआ है बहोत अच्छा लग रहा है यहां पर जो साइकिल भी खड़ा है बहोत अच्छा है सब्जी--